एक जीप है जिसका रंग है व्हाइट कलर है दो आदमी रिपेयर करने आई है।

एक डीजे साउंड है जिसमें गाड़ी लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है | डीजे पोंगे लगे हुए हैं पिंक और येल्लो कलर के।

यह क्लिनिक है जिस पर एक स्केलिटन लेता लेता हुआ है साथी में एक जैसा चित्र बना हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है और एक है ना मशीन लगी हुई है जो --

यह एक वाटरपार्क हैं साथी में एक स्टेचू हैं वाइट कलर का और है न चलते पत्थर के ऊपर स्टेचू लगा हुआ है और साथी ही में पिंक कलर की स्लाइडिंग हैं।

और है न जे ब्लू कलर के पानी है तालाब के अंदर और साथ ही मे न ग्रीन कलर का शेडोज रखा हुआ है।

और इसमें एक पिलर से जोकि रेड कलर की है और साथी में न और साथी में टुकड -टुकडों में बनी हुई है।

एक सब्जी मंडी है जो कि जिसमें न एक नीली शर्ट व्यक्ति इन गोभी उठा के एक आदमी को बता रहा है। साथ ही में व्हाइट शर्ट पहना हुआ है और कुछ बोरीज़ रखी हुई हैं जिसमें न रेड कलर की बोरी है और स् --

एक सर्विस सेंटर कार है जो कि मैंने कार रिपेयरिंग के लिए आई है। जिसका रंग है चॉकलेटी कलर है। टी एस जीरो नाइन इ के टू जीरो थ्री फाइव । एक चक्का लगा हुआ है ब्लैक कलर का साथ ही में स्टेफनी रखी हुई है।